एक लेग जिम कर रहा है।

सामने रेत और गिट्टी रखी गई है।

मोतीचूर के लड्डू गुलाब जामुन बर्फी सभी स्वीट्स मौजूद है यहां पर।

यहां पे कुछ पंखे लगे हुए है।

और दो तीन ए_सी भी लगे हुए हैं यहां काफी--

चेयर लगा के टाइम पास कर रहे हैं और मजाक मस्ती भी चल रही हैं।

दूसरी तरफ सामने के रूम के पास महिला शिक्षक या कुछ महिला स्टूडेंट --

चूरियां रखी गई हैं उसकी नीचे बहोत ही अलग-अलग के रंग के --

और यहां पे बहोत सारे बच्चे भी हैं।

जो कि झूला झूल रहे कुछ डांस कर रहे कुछ गेम खेल रहे और यहां पे हरे-भरे बगीचे भी है।

चार्जर बेचे जा रहे हैं यह शॉप एक मॉल का प्रतीत हो रहा है।

यह देखने से प्रतीत हो रहा है कि यह एक घर है जो कि बहुत ही सुंदर है।

कुछ लोग अंदर की तरफ जा रहे हैं और एक बाइक सवार अपनी बाइक को यहां लगा रहे--